यहाँ पे एक बोहोत बड़ा ग्राउन्ड दिखाई दे रह है और उसमे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है और एक अ ग्राउन्ड के आगे ब उठी हुई है।

कोई सेल्फी यहाँ पे खड़ा होके उसकी फोटो ली जा रही है और मतलब मौसम धुँधला-धुँधला सा जो है वो दिखाई दे रहा है और नीचे पानी वगैरा भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक घर जैसा लाइब्रेरी जैसा दिखाई दे रहा है बस मतलब एक घर दिखाई दे रहा है जो की व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है और इसपे खिड़की लगी है खिड़कियों में दो तीन कलर है।